इस तस्वीर में काफी सारे पड़दे टंगे हुए दिख रहे हैं।

तस्वीर में चार बसेस दिखाई दे रही हैं।

दो शेल्टर बने हुए दिख रहे हैं।

तस्वीर में अ काफी सारी जो है वो टॉयलेट सीट्स पड़ी हुई दिख रही है।

सामने कुछ घर भी दिख रहे हैं।

अंदर एक टेबल रखा हुआ है।

उसके सामने जो है वो कई सारे डंबल रखे हुए हैं।